नमस्कार
introduction to jmol application के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में मैं jmol एप्लीकेशन विंडो और कुछ बेसिक ऑपरेशंस के बारे में संक्षिप्त में समझाउंगी
हम निम्न सीखेंगे
menu bar tool bar और jmol panel
jmol panel के आकर को कैसे रूपांतरित करें :
* सामान्य organic अणुओं के models को बनाना
* hydrogen को methyl group से बदलकर अणु बनाना
हम यह भी सीखेंगे
* स्थिर कान्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए energy minimize करना
* और image को mol file की तरह सेव करना
इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको हाई स्कूल केमिस्ट्री और बेसिक ऑर्गैनिक केमिस्ट्री का ज्ञान होना चाहिए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
* ubuntu operating system version 1204
* jmol version 1222
और * java version 7
ध्यान दें
jmol एप्लीकेशन को आसानी से रन करने के लिए आपके सिस्टम पर java संस्थापित होना चाहिए
jmol application के बारे में
* यह free और open source मॉलिक्यूलर व्यूअर molecular viewer है
* chemical structures के 3 डायमेंशनल models देखने और बनाने के लिए उपयोग किया जाता है
* और proteins और मैक्रोमॉलिक्यूल्स के secondary structures को देखने के लिए भी उपयोग होते हैं
download और संस्थापन से सम्बंधित जानकारी
ubuntu os के लिए ubuntu सॉफ्टवेयर center उपयोग करके jmol का संस्थापन किया जाता है
कृपया हमारी website www spokentutorial org पर linux series में इस tutorial का अनुसरण करें
windows mac os और android यंत्रों पर संस्थापन के लिए कृपया www jmol sourceforge net पर जाएँ
और web पेज पर संस्थापित करने के लिए दिए निर्देशों का अनुसरण करें
मैंने पहले ही ubuntu सॉफ्टवेयर center उपयोग करके अपने system पर jmol application संस्थापित कर लिया है
jmol application खोलने के लिए dash home पर click करें
search box में type करें jmol
jmol icon screen पर प्रदर्शित होता है
jmol application window खोलने के लिए jmol icon पर click करें
jmol application window पर सबसे ऊपर menu bar है
menu bar के नीचे tool bar है
यहाँ display area है जो jmol panel की तरह निर्दिष्ट किया गया है
menu bar में भिन्न विकल्प हैं जैसे file edit display आदि
इनमे से प्रत्येक कई उपविकल्प भी रखते हैं
अन्य विकल्पों के आलावा tools menu परमाणुओं के बीच दूरी नापने के लिए tools रखता है
इन विकल्पों के बारे में हम आगामी tutorials में सीखेंगे
help menu jmol application के बारे में बहुत उपयोगी जानकारी रखता है
यह एक यूज़र guide भी रखता है जिसमे documentation है
tool bar बहुत bar menu icons रखता है
menu icons कुछ functions को जल्दी से निष्पादित करता है जैसे: open सेव export print आदि
यहाँ दूरियां नापने परमाणुओं के set को select करने घूमाने आदि के लिए icons का set है
modelkit icon आणविक models को edit करने और बनाने के लिए प्रयोग होता है
अपनी ज़रूरत के अनुसार jmol panel को रीसाइज़ किया जा सकता है
cursor को window के किसी कोने पर लाएं जब तक यह arrow indicator में न बदल जाये
अब window को डाइऐगनली ऊपर या नीचे खींचकर रीसाइज करें
menu bar में display menu panel के size को बदलने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है
display display menu पर click करें और resize विकल्प select करें
एक dialog box खुलता है जहाँ हम विड्थ और height pixels में स्पष्ट कर सकते हैं
मुझे 800 by 600 pixels size की window की ज़रुरत है
अतः मैं type करुँगी 800 space 600 और ok button पर click करें
अब jmol panel 800 by 600 pixels में रीसाइज़ होता है
अब कुछ सरल organic अणुओं के models बनाते हैं
modelkit हमको energy minimization के साथ models को रूपांतरित करने और बनाने की अनुमति देती है
tool bar में modelkit icon पर click करें
panel पर methane का एक model प्रदर्शित होता है
jmol panel के ऊपर बाएं कोने पर एक menu प्रदर्शित होता है
इस menu की विशेषताओं में निम्नलिखित सक्षमतायें हैं परमाणुओं को आसानी से जोड़ना मिटाना खींचना
* functional groups जोड़ना
* bonds को मिटाना जोड़ना और घुमाना
* hydrogens जोड़ना minimize करना और files सेव करना आदि
menu पर एक निश्चित विशेषता प्रयोग करने के लिए उपलब्ध चेकबॉक्स पर click करें
modelkit function एक hydrogen परमाणु को एक methyl group से बदलने की अनुमति देता है
जिस hydrogen परमाणु को आप बदलना चाहते हैं उस पर cursor लाएं
उस hydrogen परमाणु पर एक red ring प्रदर्शित होती है
परमाणु पर click करें
आप देखेंगे कि एक methyl group जोड़ा गया है
methane अणु अब इथेन में बदल गया है
पहले की तरह ही step दोहराएं
propane का model प्राप्त करने के लिए hydrogen परमाणु पर click करें
इस अणु पर energy minimization हमें अधिकतम स्थिर कान्फॉर्मेशन देगी
energy minimization करने के लिए:
model kit menu में विकल्पों पर नीचे जाएँ
minimize विकल्प पर click करें
अब हमारे पास propane अणु का अधिकतम स्थिर कान्फॉर्मेशन का model है
इस structure को mol file की तरह सेव करने के लिए model kit menu खोलें
menu पर नीचे जाएँ और save file विकल्प पर click करें
screen पर save dialog box दिखता है
उस folder पर click करें जहाँ आपको अपनी file सेव करनी है
मैं अपनी file सेव करने के लिए desktop चुन रही हूँ
अतः desktop select करें और open button पर click करें
file name पर जाएँ और text box में propane type करें
files of type पर click करें और mol विकल्प select करें
अब dialog box के नीचे दायीं तरफ save button पर click करें
desktop पर propane का 3d model mol फाइल की तरह सेव होगा
jmol को exit करने के लिए file menu पर click करें और program को exit करने के लिए exit विकल्प select करें
इसको सारांशित करते हैं
इस tutorial में हमने निम्न सीखा:
* jmol application window के बारे में
* jmol panel को resize करना
* सरल organic अणुओं जैसे methane इथेन और propane के 3d models बनाने के लिए tool bar में modelkit function प्रयोग करना
* hydrogen को methyl group से बदलकर अणु बनाना
* स्थिर कॉन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए energy minimization करना
* और image को mol file की तरह सेव करना
jmol modelkit function प्रयोग करके निम्न अणुओं के models बनायें:
* 24 dimethyl pentane और 3ethyl 5methyl heptane
* स्थिर कॉन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए energy minimize करें
* mol file की तरह image सेव करें
* tool bar में rotate molecule प्रयोग करके model को घुमाएं
आपका पूर्ण नियत कार्य निम्न प्रकार दिखना चाहिए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
अधिक जानकारी के कृपया contact @spokentutorial org को लिखें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
इस mission पर अधिक जानकारी निम्न link पर उपलब्ध है